एक स्टेशनरी दिख रही है उसके बाहर कुछ लोग खडे हुए हैं और वहाँ पर अंग्रेज़ी में विग्नन बुक सेंटर स्टेशनरी होलसेल बुक सेलर्स लिखा हुआ है।

अध्यापिका दिख रही है और कुछ विद्यार्थी दिख रहे है और जिनको अध्यापिका पुरस्कार दे रही है और ये किसी कॉलेज की तस्वीर दिख रही है।